ई-रिक्शा के राइट हैन्ड के साइड मे एक ऑफिस नजर आ रहा है जिसका शटर ऊपर है ई-रिक्शा के पीछे --

फोटो में भी एक सैलून नजर आ रहा है जिस सैलून में काले कलर की दो कुर्सियां रखी गयी है इनके सामने।